यह एक बाजार का दृश्य है।

यहां से बहुत सारे आदमी और औरत है।

में दो पोस्टर भी नजर आ रहे हैं जिसमें भास्कर क्लब लिखा हुआ है।

एकदम सामने पौधा में नजर आ रहा है।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

बहोत सारे गड्ढे भी नजर आ रहे हैं।

सामने की तरफ एक सीढ़ी नजर आ रही है जो लाल कलर की है।

सामने की तरफ तीन आदमी भी नजर आ रहे है।

सामने एक दीवार भी नजर आ रहा है जो ब्लू और व्हाईट कलर की टाइल्स से बनाया गया है।

जिसका ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल विश्वविद्याल --

सामने टैटू की दोकान भी नजर आ रही--

जो पत्थलों की मदद से बनाया गया है।

इसके ऊपर एक छज्जा भी नजर आ रहा है। जिस पर बाल्टी रखी हुई है।

सामने की तरफ एक टेंट नजर आ रही है।

सामने एक पौधा भी नजर आ रहा है।

सामने की तरफ कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

सामने बहुत सारी बिल्डिंगें भी नजर आ रही है और बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे है।

सामने एक बाटा का दुकान भी नजर आ रहा है।

उसके आगे दो कार नजर आ रही है।

सामने एक अलमारी भी नजर आ रही है।

हमने एक शीशा भी नजर आ रहा है।

ऊपर एक पोस्टर भी नजर आ रहा है जिसके ऊपर उड़ायान लिखा हुआ है।